मेरे सामने जो गंदगी है वो बिलकुल भी अच्छी नहीं लग रही है।

सामने पे समस्तीपुर लिखा हुआ है एंड तिरंगा फहराने के लिए यहां पाइप भी लगा हुआ है और पीछे के साइड पे ग्रीन -ग्रीन बहोत सारे व्रक्ष् लगे है एंड उसके पीछे स्कूल दिखाई दे रहा है हमे येलो बिल्डिंग है एंड रेड --

छे अ छोटे-छोटे पर्सन बैठे हुए हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं कठपुतली की तरह दिख रहे हैं एक ने गिटार रखा हुआ है अपने पास में।

इस इमेज में हमें शोरूम दिखाई दे रहा है और यहाँ बहुत सारे कर्मचारी खड़े होके फोटो निकलवा रहें हैं सामने वाइट कलर का कार खड़ा हुआ है।

इस इमेज में हमे कपड़ो भी शॉप दिखाई दे रही हैं।

ये हमे पेट्रोल पंप का सीन दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में हमें दिखाई दे रहा है की यहाँ पे सांता क्लॉस बने हुए हैं बहुत ही अच्छे लग रहें हैं।

इस इमेज में हमें दिखाई दे रहा है की कोई फंक्शन हो रहा है। बड़े-बड़े धर्मात्य लोग आए हुए है और सभी लोग वहां पर खड़े हुए है।

इस इमेज में हमें कुछ ठंड का सीन दिखाई दे रहा है और सभी लोग कुछ एक तरफ खड़े हो कर देख रहे हैं सब यात्रीगण लोग लग रहे हैं शायद कुछ घूमने आये हैं टूरिस्ट लग रहे हैं।

एन्जॉय ले सकते है इन बहुत ही सुहावना है यहाँ आने से बहोत ही अच्छा लग रहा है।